चिड़िया लगी हुई दिखाई दे रही है ऊपर से लाइट वगैरह है जो कि एक ही दिशा में बना कर दिखाई गई है जो कि काफी खूबसूरत लग रही है आस पास --

डिज़ाइन वगैरह और आकृतियां बहुत ही प्यारी और सुंदर दिखाई देती प्रतीत हो रही है।

काम चल रहा है उसका पास में कुछ लकड़ियां वगैरह लगाकर ऊपर तक लगा के रखा है ताकि बिल्डिंग का मेंटेनेंस बना रहे।

दोनों ऑफिस में बात करते हुए एक व्यक्ति इशारा हाथ से इशारा सामने की ओर इशारा करता दिखाई देता है हाथ मे एक कागज भी है।

ये जिसमें एक बंदे ढोकली दिखाई दे रही है एक कार भी है बाइक वगैरह दो व्यक्ति कुछ काम करते दिखाई देते हुए प्रतीत हो रहे हैं।

इस फोटो में काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और ऊपर पीछे की तरफ कुछ पेड़ वगैरह है ये कोई चीज--

दिखाई दे रहा है चर्च वगैरा का है और अह नीचे भी काफी सारे लोग वगैरा है जो की प्रार्थना करते हुए बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे है।

और आगे कुछ लोग चढ़ते हुए और पैदल जाते हुए भी दिखाई रहे हैं नीचे काफी साफ सफाई और खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में किसी मंदिर का फोटो दिखाई दे रहा है जहां पर नाम लिखा है श्री राम महाराम देव जी इस समाधि का फोटो दिख रहा है जहां पर --

काफी सारे लोग अंदर जाते बाहर जाते आते हुए दिखाई देते हुए प्रतीत हो रहे हैं आसपास का भी नजारा काफी खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है।